जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे सोफे रखे हैं।

पीछे एक घंटा लगा हुआ है।

पीले कलर में लगा हुआ है।

लाल कलर का कलर चढ़ा हुआ है।

यहां पर एक औरत और एक व्यक्ति खड़ा है।

एक बच्चा डेस्क पर सिर रख कर लेटा है।

पीछे नीला कलर का टीम लगा हुआ है और पीछे बहोत बड़ा सा मैदान दिख रहा है।

और छोटे छोटे हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक औरत और एक पुरुष खड़ा है यहां पर--